फोटो में जी आप तैं दिखेणु लग्युं कि यख मा जी एक पुस्तकालय छा जू की दुई मंजिला कू छा यख मा जा आप तैं दिखेणालग्युं ये कू दरवाजू नीलू रंग कु छ।

भैर बटिन एक लम्बी सी बड़ी सी रोड होल दिखेणक म लगी जखमा जि लोग उंडा बटिन फंड जाणान भैर बटिन अर एैंच बटिन आपथे एक बडू सी बोर्ड भी होलु दिखेणक मा लग्यूं।

फोटो मा जी आप ते एक रेस्टॉरेंट होल दिखेण लग्युं जख मा जी आप ते बड़ा बड़ा सोफा कुर्सी अर मेज होल दिखेण कु मिल लगी।

फोटो पे आपते दिख्याण लग्युं की यखमा जी एक गुफा च जाका उंडा -फुंडा बिटिन आपते हरी-भरी हरियाली दिखेणक लगीं सेवालाे दिखेणक लाग्यां।